छोटे-छोटे भी डिब्बी हैजो नीले रंग के और सफेद रंग के डिब्बी है टाइल्स है सफेद है।

ऊपर सफेद और नीले रंग के आसमान है। पाइप लगी हुई है सफेद रंग की। काले रंग की छत है और कथे रंग के कार्टून पड़ा हुआ--

हरी घास है सामने कुछ लोग खड़े हुए है बड़े-बड़े पेड़ है हरी पत्तिया है बहुत सारे लोग खड़े हुए है जो काले रंग के और पिंक कलर के कपड़े पहने हुए है।

सफेद और भूरे रंग की पैंट किये गए है। खंबे खड़े हुए है। ऊपर से तार गई हुई है। अगल बगल पेड़ पौधे है। हरी पत्ती है। हरे हरी घास है।

दो आदमी खड़े हुए है। एक ने काले रंग का कपड़ा पहना हुआ है। एक बॉल रखी गई है नीले रंग की। बगल मे एक आदमी खड़ा हुआ है जो कथे रंग का शर्ट पहना --

जो रंग-बरंगेया कपड़े है बॉल रखी गयी है हरे रंग की सफेद रंग की लाल रंग की बॉल रखी हुई है गुब्बारे लगाए गए है जो नीले रंग के और सफेद रंग गुब्बारे है दिवाल में टाइल्स लगी हुई--

लगी हुई है बगल मे ती दरवाजा बना हुआ है खुरसी लगी है जो लाल रंग की खुरसी है। पीछे टाइल्स ( बिछी हुई है। एक लाइट जल रहा सफेद रंग का। ऊपर के साइड ( पे तार लगे हुए है और खुले रंग की पट --

सामने साड़ी पड़ी हुई है नीले रंग की नीली गुलाबी हरे रंग की साड़ी है बगल में कुछ पर्दे रखे हुए है जो सफेद रंग की है और नीचे टाइल्स बिछा हुआ है पीले रंग की--

में दुकानें लगाए गए है जो नीले रंग की और सफेद रंग की पट्टी है बाइकें खड़ी हुई है काले और लाल रंग की दुकानें ऊपर पोस्टर लगा हुआ है जो हरे रंग की है।

सामने बहुत सारे कुप्पे रखे गए है। सफ़ेद रंग की कुप्पे हैं नीचे एक साइड पे कप रखी गयी हैं।